और जो बेड है जहाँ में केतली रखी है और जहां में ये टीवी लागी है और जे पर्दा लागे हैं।

और मही जे लागी है ये और मेट लगी कुर्सी परी ऐं गरीबो का है ये --